मेज पर तीन बोतलें पड़ी हैं और फिर आगे एक दीवार जिस पर--

यह एक बड़ी सड़क है जिसका रंग काला है सड़क के दोनों सीमेंट की जाली वाली दीवारें हैं जिनमें नीले रंग की लाइनें है सड़क के किनारे तीन आदमी खड़े हैं।

उम लाल है इसमें शीशे की खिड़कियां है इसके सामने बहुत से लोग खड़े अ खड़े जिन्होंने रंग बिरंगे कपड़े पहने मार्ग सामने एक बड़ा सा मैदान है इसमें तीन लोग --

फ़रश पर सब्ज कलीन बिछा है दुकान की --

दीवार के दूसरी तरफ बहुत सी इमारतें--